साइड बहुत सारी पिलर्स बनी है दीवार अ सीमेंट की और बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है जो कि लाल कलर की है कुछ नीले कलर --

यह एक पार्क है। पार्क में सीढ़िया बनी है। सीढ़ियों के बीच में एक गोल गोल बना है।

यहाँ एक गार्डन है और गार्डन में काफी सारे हरे-हरे पेड़-पौधे है चट्टानें हैं और एक गांव जैसा बना है यहाँ।